पिक्चर दिखने के लिए बहुत सुंदर पानी है। इसमे पनि से बोटिंग करती हु। इसमे एक काले रंग गाव है।

इसमे कोकोनट ट्री और पर्यावरण बहुत सुंदर है और घास भी बहुत अच्छी लग रही हू।

दिस इस पिक्चर मे दिखने के लिए एक बहुत सुंदर पानी जलती हु इसमे एक सड़क है सड़क मे वेहिकिल्स जाने के लिए बहुत सुंदर --

इस पिक्चर मे दिखने के लिए और बहुत बड़ा सुन्दर--

इधर हम दिखने के लिए घास भी बहुत सुंदर है। इधर फूट बोल्ल खेलने के लिए बहुत बच्चे इधर फुटबाल खेलते हु--